इस फोटो मे आप देख सकते हैं। आपको एक कच्ची जमीन नजर आ रही है। जहां आप देख सकते है। आप --

अअ नीला नज़र आ रहा है | इसमें विंडो दिखाई दे रही हैं और कुछ लोग स्टेशन पर जाते दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में आप देख सकते है आपको एक स्टील की प्लेट में जलेबियां नजर आ रही हैं।

फूल दिखाई दे रहे हैं। इसमे आपको गुलाब के फूल गेंदे के फूल मोगरे के फूल नजर आ रहे हैं।

जहां आप देख सकते हैं। यह स्विमिंग पूल मे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे आप देख सकते है आपको जमीन पर तीन कछुए नजर आ रहे है।

इस तस्वीर में आप देख सकते है आपको एक एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है। इस एयरपोर्ट पर आपको देख सकते है आप --

आप देख सकते है इस फोटो मे आपको एक सड़क नजर आ रही है --

एक फ्रूट्स की दुकान नजर आ रही है और कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे है ऑटो खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आपको एक हरा भरा खेत नज़र आ रहा है।